यहा पे एक क्लासरूम दिख रहा है जहा पे बेंच और टेबले रखी हुई है और पोस्टर भी लगा है और यहाँ एक बड़ासा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे टीचर लोग पढ़ाते है।